एक दुकान का है। दुकान के अंदर --

चप्पल जूते बैग कपड़े --

सभी प्रकार के --

यह दृश्य हमारे सामने एक --

नदी के ऊपर से बनाया गया पुल का है।

यह दृश्य मे हमारे सामने एक पिज्जा स्टोर है जिसका नाम सेवनथ हैवन --

वाहन नजर आ रही है। यहाँ एक लड़की है जिसने अपने मुँह बांध रखा है इसके कान पर मोबाइल लगा रखा है। एक --

पर्दे लगी हुई है | स-स्टार चमक रहे हैं | ये अपने पैर को पकड़ कर डांस करती हुई दिखाई दे रही है | ये छोटी लड़की है |

यह एक अ फोटो है। इस फोटो मे एक जोड़ का दृश्य नजर आ रहा है। यह जोड़ गांव के बाहर बनाया गया है।

ठहरी हुई है यह पुलिया लोहे का पुलिया है।

न्यूरो बी.के. हॉस्पिटल के नाम से बनाया गया है | यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है | यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है | इसके बाहर शीशे लगी हुई है |